इसमें बहुत सारी डिब्बे रखे हुए हैं नीले डिब्बे रखे हुए हैं सफेद डिब्बे रखे हुए हैं।

एक कमरा है कमरे में बहुत सारी मशीने रखी हुई है।

छत पे बहुत सारे रॉड लगे हुएं हैं जो जल रहे। पीछे पर्दे लगे हैं।

कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ है सामने एक शटर लगा हुआ है।

इस पे गेंदा का माला टंगा हुआ है बाहर कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

यहां पे बहुत सारे टायर रखे हुए हैं एक कुर्सी रखी हुई है एक मेज रखी हुई है मेज पे लाल रंग की बोतल रखी हुई है।

एक आदमी है जिसने सफेद रंग का पैजामा कोट पहन रखा है।